ये तीन लड़के लड़कियां हैं जो तीनों डांस कर रही है जिनका फेस नहीं दिख रहा है।

और दुकान के अंदर ब्रेड फ्रिज फ्रिज के अंदर कोल्डड्रिकें रखी है।

राजस्थानी जो डांस कल्चर है उसके तरह डांस कर रही है।

जिनके आठ टांगें हैं और उनके पीछे एक लेडिज है और एक बंदा --

जो साइकिल लेके आ रहा है और गुलाबी कलर की टी शर्ट पहन रखा है और पीछे की तरफ एक बिल्डिंग है।

एक बाइक वाला है जो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है और ऊपर से एक हाईटेंशन लाइन जा रही है।

और बाहर की तरफ वर्क चल रहा है बाहर दो गाड़ियां खड़ी है एक होंडा की है एक टाटा की है और उससे साइड मे एक --

ये एक रास्ता है जिसके बाहर की तरफ एक बस है और एक होम्योपैथिक अस्पताल वाला बोर्ड लगा हुआ है।

और इस इसकी बॉडी इसी बोर्ड पर एक आंध्रा बैंक का प्रचार हो रहा है और पीछे की तरफ --

और गेट लगे हुए हैं बाहर की तरफ दो तीन गाड़ियां खड़ी है एक स्कूटी है और दो टू व्हीलर्स है।

मछलीया लेने वाले हैं और एक बंदे के पास जिसे अपन बोलते तराजू वो रखा हुआ है।

ये एक रिसॉर्ट है जिसके अन्दर स्विमिंग पूल है दो तीन चार खजूर हैं।

फल फूल लगे हुए हैं और दृश्य शाम जैसा दिखाई दे रहा है।

ये एक सब्जी की दुकान है।

जिसके ऐप्स दिख रहे हैं एक लड़के ने नीले कलर की टी शर्ट पहन रखी हैं यह एक जिम है।